वहीं पे इसमें हमें नीले कलर से पीछे एक दिखाई दे रहा है कपड़ा वही इसमें बहुत सारे बैलून भी है।

यह तस्वीर हमें बस स्टेशन की दिखाई दे रही है वही पे हमें कुछ बसे भी है।

वहीं इस फोटो मे हमें बहोत सारे बाँस भी दिख रहे हैं। जहाँ जो वहीं गुच्छड भी है। वहीं इस फोटो के पीछे एक घर --

जहाँ पे वही कुछ लोग खड़े हुए है वही बगल में हमे एक साइकिल की परछाई भी दिख रही है वहाँ पे हमें एक बक्सा भी दि --

जोंही इस फोटो मे हमे बहोत सारी लाइटे दिख रही हैं और बहोत सारे फूल अलग-अलग रंग के हैं। वहीं इसमे एक हाथ जोड़े हुए महिला की फोटो है।